यह एक मिठाई का दुकान है यह दुकान बहुत ही बड़ा है इस दुकान में सभी प्रकार की मिठाईया मिल जाती है।